जो एक कार के पास खड़ा हुआ है।

और एक पीले कलर की बाल्टी रखी हुई है।

यह फोटो एक डॉक्टर की लैब का है।

जहां बहुत सारी मशीनें रखी हुई हैं।

और लकड़ी की बहुत सारी अलमारी भी हैं।

जो एक ग्राउंड में खड़े हुए हैं।

जो कि एक बड़ी मार्केट है।

जिसके नीचे एक नदी जा रही है।

इस फोटो में बहोत सारी बाइक और साइकल भी खड़ी हुई है।

इसमें एक लोहे का गेट भी है।

जहां एक पंखा लगा हुआ है और--

जहां छोटा छोटा हरे रंग का घास है वो--

और यह बैग पनियों में बंद है।

जो एक कुर्सी के ऊपर बैठी हुई है।